यह एक बहोत ही सुन्दर चित्र है।

तथा आप यहां पर अपना मोबाइल भी--

यहां पर एक बस भी खड़ी हुई है बस का रंग सफेद व लाल है।

यहां पर एक पीले रंग का घर दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत से अलग अलग रंग के घर दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में बहुत सी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

यहां पर आप अलग अलग कंपनी के नए मोबाइल खरीद सकते हैं।

घर के सामने एक मैदान है यहां पर कुछ मुर्गिया व हंस भी दिखाई दे रहे है हंस का रंग सफेद है।

येह चित्र किसी के घर का लग रहा है।

यह एक बहुत ही सुंदर जगह है।

साथी में यहां एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ झूले भी लगे हुए हैं।

यह एक दुकान का चित्र है दुकान पर एक बोर्ड लगाया गया है बोर्ड पर बाघ बकरी चाय का विज्ञापन है।

यह एक बैंक के बाहर का चित्र है।

बैंक का नाम एस_बी_आई है अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर हम पैसे जमा करते है।

तथा यहां पर कुछ बच्चे फैंसी ड्रेस में भी खड़े हुए हैं।

यहां पर बहुत सा सामान रखा गया है।

इस चित्र में एक मशीन रखी गई है।

अलग अलग तरीके की मछलियों को--

यहां पर कटोरी में एक सलाद भी रखा हुआ है।

जिन्होंने वि आकार में फोटो खिंचवा रहे हैं।

येह एक पहाड़ी शेत्र का चित्र लग रहा है इस चित्र में बहुत से घर दिखाई दे रहे हैं।

चारो ओर पहाड़िया भी दिखाई दे रही है साथ ही पेड़ो से लदा हुआ जंगल भी है।

तथा यहां पर कुछ बसें भी खड़ी हुई हैं।

यहां पर एक गुरु है जो अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा है।

शिक्षक ने कुछ सवाल हल किए हुए हैं।